यह एक राइडिंग पैड है जो की--

यह एक तालाब है जहां पे लोग नहाने के लिए इंजॉय करने के लिए--

जहां पर लोग अपने पेट्रोल --

यहां पर एक व्यक्ति हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट हैं।

और यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था है कुछ सीटे है इसमें--

के ऊपर एल_जी का लोगो और एल_जी लिखा हुआ है।

जिसका नाम मानसरोवर स्टेशनरी है।

यहां से हर जगह की टैक्सियां मिलती है।

एक यात्री इधर उधर आ जा रहे हैं चालक टहल रहे आसपास हरे पेड़ पौधे नजर आ रहे।

और यहां पर घर घर भी डिलीवर किया जाता--

जो कि जीवित हैं कुछ मछलियां मरी हुई है।

सॉल्व एवरीथिंग ये ऐसे कुछ लिखे पोस्ट --

यहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं।

यह एक सनातन धर्म का दैवीय मंदिर है।

द आर्ट नर्सरी यह पेड़ पौधों की बिज़नेस का एक ऑफिस नजर आ रहा--

नंबर है यू_पी बत्तीस एच_जे अट्ठारह छप्पन।

यह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम श्री राम हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

ऊपर सुपर स्पेशलिटी लिखा हुआ है डॉक्टर प्रतुल राज गुप्ता।

इसमें शूज और सैंडल्स भी रखे हुए हैं।

होटल या बैंकेट बनाया गया है।

यहाँ पर नमकीन स्वीट्स ब्रेडस् केक भी मिलते हैं।

यहां इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है।

जिसपे दो ट्रक पेट्रोल से भरे हुए आए हुए है।

यह एक मछली बेचने वाला व्यक्ति है।

खूबसूरत बिल्डिंग में हमें बहुत अच्छा नजारा दिखाई दे रहा है।

ये लिखा हुआ है द हाजिल नट फैक्ट्री ।

आसपास सुंदर सी हरियाली पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

लाल पीले और हरे कलर के कपड़ो का--

ये यूपी आर सिटी बस स बस अड्डा हैं।

केसर बाग स्वागतम इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है।

तीन कुर्सियां आगे और एक मेन ब्रांच के जो मैनेजर जैसे हैं कुर्सियां--

उनके लिए रखे हैं और एक बोर्ड लगा हुआ है आने जाने का रास्ता है।

क्रिकेटर्स की पिक्चर्स प्रिंट हुई है।

यह एक बड़ी इमारत की तरह यह एक ऐतिहासिक इमारत लग रही है।

इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं और लाल कलर की मैट --

तालाब में कछुए रहते हैं।

यह एक कॉलेज है जिसका नाम आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखा हुआ है।

दुकानदार में दुकान में दुकानदार उनको समझा रहा है।

यहां पर तीन मशीनें उपलब्ध है और कुछ--

इसके जस्ट बगल में एक आर्यन की लिफ्ट लिखी लगी हुई है।